वो शीशे की है और ब्लैक पट्टी के साथ बनाई गई हैं।

उसके बगल में एक अलमारी बनी हुई है जोकि वाइट कलर के सनमाइका से बनाई गई--

यह व्यू एक पहाड़ी का है जहां पर बहोत सारियां पहाड़ियां नजर आ रही है।

और एक तार लटकी हुई है और इसकी इधर की तरफ--

फोटो में एक पार्क दिखाया गया है जहां पर--

और उसके पीछे वाली अलमीरा में बहोत सारी किताबें रखी हुई है।

काफी खुला और हवादार ये होटल लग रहा है और जो साइड में थमले बने हुए वो भी व्हाइट कलर से पेंट किए हुए हैं।

इस पिक्चर में बहोत सारे लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाए गए हैं।

डांस करती हुई दिखाई दे रहे हैं जैसे की लग रहा है वो अपने किसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है और ऊपर जो कर्टनस् लगे हुए हैं वह अलग अलग रंग के हैं।

पिक्चर में बहोत सारे है आदमी जिम करते हुए दिखाई दे रहे--

सूखे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बादल दिख रहे हैं।

पौधे उगे हुए हैं पानी भी दिखाई दे रहा हैं और बहुत सारे लोग--

एक नर्सरी ही लग रही है नर्सरी में बहोत छोटे छोटे पौधे रखे गए हैं।

विंडोज़ के साथ ह जो पट्टी बनाई गई है वो रेड व्हाइट कलर से पेंट की गई है।

क्यारियां काफी हरी भरी लग रही हैं और काफी ज्यादा फूल भी नजर आ रहे हैं।